और यहां पर बहोत सारे खाने पीने के समान रखे हुए है।

यहां पर मुझे एक गार्डन दिखाई दे रहा है।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

और यहां पर एक सोफा भी है।

यहां पर बहुत सारे फ्लावर्स सेल करने के लिए रखे हुए हैं जैसे वाइट --

एक घर दिखाई दे रहा है।

मिठाइयों की दुकान है और यहां पे--

किए हुए हैं और आदमी बैंक से बाहर भी आ रहे हैं।

यहां पर मुझे बहोत सजावट दिखाई दे रही है।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

तथा यहां पर एक रास्ता भी है।

और यहां पर बैठने के लिए बहुत अच्छी सी जगह भी है।

कुछ लोग भी हैं जो चल रहे हैं।

यहां पर मुझे एक जिम दिखाई--

जहां पे बोर्ड लगा है दीपा--

यहां पर मुझे बहुत सारे लोग--

पर साइकिल्स बाइक भी--

यह शाम का समय लग रहा है।

बहुत सारी गाड़ियां पार्क --

यहां पे मुझे एक चर्च दिखाई दे रहा है।

और गेट के पास एक गाड़ी पार्क की हुई है।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

बहुत गाडिया पार्क की--

जैम का बोर्ड लगा हुआ है।

और यहां पर झंडे भी लगे हुए हैं।

क्लास दिखाई दे रही है यहां पर बहुत सारे बच्चे है।

यहां पर एक गेट है व्यू ।

एक स्पून भी रखा--